यह एक ऑफिस वाला एरिया है कंप्यूटर वम्पूटर और वर्क हो रहा है।

पहाड़ी इलाका है पहाड़ी इलाके पे पत्थर रखे हुए हैं काला पत्थर पहाड़ी इलाका जंगल पेड़ लगे हुए हैं।